पेंटिंग की गई है यह बहुत बड़ा गेट है।

ये सब भी टंट के अंदर जाने के लिय तैयार है।

घना जंगल है। एक लड़के ने अपने हाथ में फूल ले लिए हुआ खड़ा है।

अंदर से बाहर की ओर मुंह गाड़ कर फोटो क्लिक करा रहा है। यह एक लड़का ऊपर से --

और फल की दुकान का है जहां पर एक लड़का --

गुलाल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

खेत वाल्ले ने अपने खेत के अंदर खाद --

इस तालाब के बाहर आ चुका है।

यह दृश्य हमारे सामने एक --

कुछ बच्चे आदमी पैसा निकलवाने के लिए लाइन में लग रहे हैं।

सैलून का है। सैलून के अंदर --

साफ सुधरा नजर आ रहा है।

पार्क के अंदर हरे-हरे पेड़ --

यह अपने अनुसार मिठ्ठा और--

जिसमें प्लेटफॉर्म का सीन नजर आ रहा है। प्लेटफार्म के अंदर --

गोल अकार के कागज के द्वारा बनाए गए हैं।